एक मैदान है जिसमें हरे-भरे घास है कुछ पेड़-पौधे है जो कि छोटे-छोटे और हरे-भरे है और पीछे दो मंजिला मकान है।

नदी मे एक पाइप डूबी है जो की हरे कलर का है।

एक औरत है जो की फोटो ले रही है।

एक मंदिर है जिसमे पीले कलर का पेंट हूआ है उसके बगल मे एक घर है जिसमे सफेद रंग का पैंट हूआ है।

मकान मे गुलाबी रंग का पेंट हुआ है और कही कही षफेद रंग का और चारों तरफ बड़े-बड़े पेड़ है और खंबे है खंबों मे तार लगे हुए है।

एक नदी है जो की बहुत चौड़ी नदी है जिसमे पानी बेह रहा है | पानी गंदा है और पानी के साथ कुछ घांस बेह रहीं हैं।